एक दूसरा आदमी पिंक कलर की शर्ट पहने हुए हैं और यलो कलर का मास्क लगाए हुए हैं और पीछे दीवार हैं जो ग्रीन कलर की हैं वहाँ पे बल्ब भी लगा हुआ हैं।

इस इमेज मे हमे--

इस इमेज मे हमे बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा हैं जिसमे ऊपर धन का निशान लगा हुआ हैं यहाँ झंण्डा भी लगा हुआ हैं।

इस इमेज मे हमे कोई यात्रा मे यात्रा की लग रही हैं जिसमे झांकी बनी हुई हैं और आदमी जो रेड कलर के

इस इमेज मे हमे एक नर्स दिखाई दे रही हैं जो कुछ लिखा पड़ी कर रही हैं और यहाँ बहुत सारा दवाई का सा--

सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं और इसमे एक पर्चा लगा हुआ हैं जिसमे लिखा हैं लैब जांच एक महिला हैं जो चुनरी सर पर डाली हुई खड़ी हुई हैं एक आदमी बाहर मे बैठा हुआ हैं।

मे के वाइफ की पकड़ के खड़ा हुआ हैं एक जा रहा हैं जो यलो कलर की शर्ट पहने हुए हैंकार खड़ी हुई हैं जो रेड कलर की हैं।

ये एक छत का काम लगा हुआ है ये मशीन से कुछ उम् कर रहे है छत पर छह सात आदमी है।